दुकान में व्हाइट और ब्लू कलर के बैलून से सजाए--

बहुत सारे कन्घी रखे हुए हैं।

डार का कलर भी ब्राउन है।

गेट के अंदर नीचे जमीन का कलर ग्रीन है।

घर के दीवार का कलर भी व्हाइट है।

एक दुकान का दृश्य है जिसमे पूजा हो रही है।

सोफे के सामने एक टेबल है जिसमें एक पेन और एक डिब्बी रखी हुई है।

तालाब के पीछे एक घर है जिसमें दो खिड़कियां है।

बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

स्टेशन के ऊपर का रंग व्हाइट है।

मैदान के बगल में एक घर बन रहा है जिसका कलर रेड है और बहुत सारी खिड़किया है।

यह एक आश्रम के बाहर का दृश्य है जिसमें एक पेड़ है।

जिम का जमीन में ब्लैक कलर का है और ऊपर व्हाइट कलर का है।

ऊपर में वाइट कलर का पेंट किया हुआ है और नीचे की जमीन ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है।

एक बच्चे ने लाल तिरंगा पहना हुआ है।

एक औरत ब्लैक कलर का पर्स टांग के खड़ी हुई है।

यहां दो बस खड़े है।

टेबल को रेड और एलो कलर से पेंट किया हुआ है।

दुकान में एक आदमी रेड कलर के टेबल पे बैठा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर ब्लू कलर का बैनर टंगा हुआ है जिसपे संकल्प एजुकेशन व्हाइट कलर से लिख--